लोग आकर अपने वॉकिंग मॉर्निंग सब करते हैं यहां पर आके--

पत्थर भी है और चिड़िया एक डाल पे बैठी हुई है।

और इधर भी सब चीज भी है पब्लिक पुरी जुटी हुई है।

हरियाली भी है औस कि-- लाल-- ऊपर छतो पर दिख रहे है।

और बहुत अच्छा सजावटी भी है और यहां पर तीन बच्चे लगते हैं आपस में बात कर रहे है।

यहां पर स्कूल है स्कूल के बाहर एक थोड़ा छोटा सा एक बड़ा गार्डन है।